वो कोई सूट पहने हुए है कोई।

इस तस्वीर में मुझे हल्का फुल्का दिख रहा है कि एक--

ये बोर्ड पर और भी चीज बने मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं दे रहा है।

सजावट बहोत अच्छी है लाइट आ रहा है।

स्ट्रीट लाइट में लाइट जल रहा है फ्लैट दिखाई ।

इस तस्वीर में मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल का--

दीवाल है लाइट जल रहे हैं आस-पास जो है कॉन्टर बने हुए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं।